मंदिर में बुहत सारे पुजारी होते हैं जोकि लोगो को पूजा पाठ करवाते हैं।

लोग आके अपना एन्जॉय करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं और मोर्निंग वाल्क करते हैं टहलते हैं।